ये मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। यहां पर--

मेरे सामने एक छत दिखाई दे रही है छत पर बहुत सारी टंकियाँ भी रखी हुई दिखाई दे रही है।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

बहुत सारी लाइटिंग हुई दिखाई दे रही है यहां पर दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहां पर छत का कलर --

कुछ का नाम जो है किरयाना स्टोर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ट्रेन का आगे नंबर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आगे--

मेरे सामने एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।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

यहां पर बिल्डिंग भी रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पंखा भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

में बहोत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे बैलून भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

आसमान का कलर ब्लू कलर का दिखा--

यहां पर रुप जोड़ी भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर मसाला भी दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं।